पीछे की तरफ आर्टिफिशियल फूलों से सजाया गया पर्दा है।

रैक के अंदर काफी सारे बक्सें देखे जा सकते हैं।

यहां पर हमें एक रेलवे लाइन दिखाई दे रही है।

कुछ अन्य व्यक्ति सामने की तरफ गुजरते हुए दिखाई दे रहे हैं।

यहां पर हमें एक बड़ी इमारत नजर आ रही है।

यहां पर हमें सफेद रंग की कुछ बड़ी बड़ी इमारतें नजर आ रही है।

आसपास बहुत सारी कारें हमें आसानी से देखने को मिल रही हैं।

एक व्यक्ति हरे रंग की शर्ट पहने यहां खड़ा देखा जा सकता है।

ऊपर सफेद रंग का खाली आसमान हमें दिखाई दे रहा है।

यहां पर हमें एक परिसर के बाहर का नजारा देखने को मिल रहा है।

पहाड़ के ऊपर एक व्यक्ति बैठा हुआ नजर आ सकता है।